तो जैसा कि आप देख सकते हैं।

सकते हैं यहां पर--

ग्रीनरी ग्रीनरी हैं यहां--

और यहाॅं पर बहोत सारे पंखे लगाए हैं।

तो यहां पर देख सकते हैं जैसा कि इस--

आप सब देख सकते हैं यहां पर--

तो जैसा कि आप देख--

है और यहां पर बहुत सारे लोग --

बहुत सारी ट्रेन आती हैं।